इस बस में एक आदमी एक बैग और एक थैला ले के चढ़ रहा है।

छोटा छोटा घास और पेड़ भी खड़े हैं।

इतने सारे पोस्टर लगे हुए हैं अलग अलग चीजों के।

इन पर पन्नी लिपेटकर और चारों तरफ इनके एक रस्सी खैंच रखी है।

यहां पर बिजली के तार भी जा रहे हैं।

यहां पर एक लेडिस खड़ी है।

ऊपर शिशा भी लग रहा है।

पांच आदमी बैठे हुए हैं दो आदमी साइड में खड़े हुए हैं।